और अ आस पास पेड़ दिख रहे हैं और रेड कलर की पट्टी है ।

यहां पर हम एक टेंट का पंडाल लगा हुआ देख रहे हैं । गेट बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ।

और पेड़ पौधे दिख रहे हैं खेत में कुछ है दूरी पर हरी भरी फसल जैसी दिखाई दे रही है एक बाउंड्री टाइप की भी है आसमान भी --

यहां पर एक ग्राउंड है जो कि हरियाली हरी भरी दिख रही है और बहोत से व्यक्ति दिख रहे हैं जो घूम रहे हैं ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए।